बहुत बड़ा घर बना हुआ है आदमी ये उआ पे पुलीस आ चुकी है और देखने में बहुत अच्छी है बहूत जिप भी रखी हुईं है उनका मॉडल देखने में अच्छा --